अंधेरा दिख रहा है। एक टीम टीम सेट हो रही है। उसमें एक मूर्ति खड़ी हुई दिख रही लाइटें लगी हुई दिख रही --

बादल में ब्लैक नीला पिंक पीला ऑरेंज कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

व्हाइट कलर की हल्की सी पत्तियाँ दिख रही हैं रोड दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं जंगल टाइप का दिख रहा है।

स्टेज दिख रही स्टेज पे बॉक्स रखे दिख रहे लाइटें दिख रही रेड कलर की दरी बिछी दिख रही ग्रीन कलर की दिख रही डोरी वगैरह दिख रही।

हाती दिख रहा है हाती पे बैठा हुआ एक पुतला दिख रहा है। उसके हाथ में रा त्रिशूल कुल्हाड़ी टाइप की दिख रही --

अलमारी दिख रही है। अलमारी में बहोत सारी बुके रखी दिख रही है। ऊपर पंखा लगे दिख रहें --

बहोत सारी बोरी रखी दिख रही हैं क्रेडे रखी दिख रही हैं बहोत सारे जेंट्स दिख रहे हैं खंबे वगैरा दिख रहे हैं।